ये एक जिम है जिसमें एक लड़का ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए खड़ा है उसके हाथ में एक वोच है।

टीचर ने क्रीम कलर की साड़ी पहनी हुई है और वो चश्मा लगा रही हैं ।

ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसके दोनों साइड गाड़ी और स्कूटी रखी हुईं हैं दोनों साइड पेड लगे हुए हैं ।

यहाँ पे सब लोग देख रहें हैं बाहर एक गाड़ी खड़ी हुई है एक दीदी खड़ी हुई है जिन्होंने ग्रे कलर की --